इस फोटो में मुझे नाव दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी कुर्सी दिखाई दे रही है।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

मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे लोहे की सीढ़ी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक कैफे दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो मे मुझे पुरुष दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे बहता हुआ झरना दिख--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

इस फोटो में मुझे कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कार और बाइक दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे कांच की खिड़कियां दिखाई--